आगे नारियल के पेड़ लगाए दिखाई दे रहे हैं बाजू में एक बढ़िया बिल्डिंग दिख रही है।

यहां एक रात्रि के समय के गार्डन की फोटो है।